अलिख में कुछ पैसे रखे हुए हैं।

यह अलमारी लकड़ी की है।

इसमें बहुत सारे प्रकासन की किताबें रखी हुई है।

यहां बहुत सारी छोटी छोटी अलमारियां बनी हुई हैं दीवार में और इनमें गत्ते स् के कागज में कुछ रखा हुआ है।

और एक मेज पर पन्नी गेट ओपन है।

पेंटिंग कर रहे हैं एक बच्ची पर सो रही है।

यहां पर लोहे का समान है।

बच्चे नीचे घुटने के बल बैठे हैं।

इसमें तीन बड़े गमले रखे हुए हैं।

इसकी पैडिया बीच में गोल हैं।

इस घर में एक जीना है वाश बेसिन लगा हुआ है।

घर में स्काई ब्लू और वाइट कलर हुआ है।

आरती बुक सेंटर यहां पर बहुत सारी भीड़ है।

यहां पर गोल्डन कलर के पर्दे है और बहुत सारा बैंड बाजों वालों का समान है।

यह अगरबत्ती और मोमबत्ती जली हुई हैं।

यह एक बैटरी की दुकान है।

और ग्रीन कलर के गत्तो में बैटरे रखे हुए हैं और एक फैन है।

इनके इनका कलर मिट्टी कलर है।

पास में पेड़ है छोटे छोटे घास है दूर एक टॉवर है।

इसके बाहर ग्राउंड है जिसमें कई मूर्तियां रखी हुई हैं व्हाइट कलर की।

यह पास में पेड़ है ऊपर वायर है।